यहां पर रोड के सामने एक व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहा है।

दुकान के पास लाइट लगें हुए हैं आस पास और इधर उधर दो ठो पोस्टर लगा हैं।

एंट्री में बहुत ज्यादा चाय पत्ती है।

एक आदमी है जो काम कर रहा है यहां पर।

आदमी है जो दूर खड़ा हुआ है।

पास ही में एक फैन है जो रैपर में लपटा हुआ है।

आदरणीय है जो इन लोग का फोटो ले रहा है।

गोडाउन एकदम खाली सा है।

यहां पर एक छोटा सा शॉप दिखाई दे रहा है शॉप पे बहुत सारा सामान है।

विंडो गेट पर बहुत सारे लोग आते और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसके ऊपर लाल रंग का झंडा है जो दिखाई दे रहा है।

तीन कार है जो दिखाई दे रहा है।

इस रूम के पास एक खिड़की खुला हुआ है और दो खिड़की बंद पड़ा है।

जो कि गार्डन है बागान का इलाका है।

सामने कंप्यूटर स्क्रीन में मॉनिटर खड़ा हुआ है।

एकदम सा खाली रूम है यहां पर कोई लोग नहीं दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान है आसमान में घना बादल है।

देखने में शाम का टाइम लग रहा है।

रूम के ऊपर एक पंखा है जो नहीं घूम रहा है।

और बहुत ही शांत जगह है और ऊपर स्क्रीन पर टी_वी चल रहा है।

यहां पर तालाब के सामने एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ दिखाई दे रहा है।

दुकान में देखने के लिए और साबुन कोलगेट और एक कैंची और उसके पास पेपर लटका हुआ है।

इधर उधर रस्सी और पॉलिथीन लटके हुए हैं और भी बहोत सारा सामान यहां पर अवेलेबल है।

देखने में कलर देखकर कलर लगता है की ब्लू लाल--

यहां पर खाली मैदान के सामने एक दो तल्ला का घर बना हुआ है और उसके सामने एक बिल्डिंग है।

आकाश के पास बहुत घना बादल दिखाई पड़ रहा है।

दिखने में बहुत ही अच्छा है का घर औ--

दीवार पर तिरंगा का फोटो लगाया हुआ है।

यहां पर पराठा रखा हुआ है प्लेट पर।

दिखने में पराठा गोभी का पराठा लग रहा है।

मछली बिक्री कर रहा है दुकानदार और कस्टमर जो है उससे डील कर रहा है मछली कितना किलो भाव का है।

यहां पर मोबाइल चार्जर ऐसे बहुत सारा सामान है जो दुकान में रखा हुआ है।